और अंदर फोंस वगैरह मिल रहे हैं।

सामने ब्लू और यट से डेकोरेशन कर रखी है बैलून से और एक--

चेयर डली हुई है जिसपे लोग बैठे हुए है और साइड में--

बना रखे हैं कुछ व्हाइट का है ग्रीन है रेड है येलो है ब्लैक है पिंक है।

बीच में एक गोल सा कुछ लगा हुआ है और पेड़-पोधै ले रखे हैं हाथों में और साइड में भी घर हैं। जिसका व्हाइट पेंट हो रखा है और--

उसके निचे अधार लिखा हुआ है अधार इनरोलमेंट एंड अपडे--